बहुत सारे इनवर्टर दिखाई दे रहे हैं।

सजावट का सामान रखा हुआ है नीचे--

एक कपड़ा दिखाई दिखाई दे रहा है छोटे छोटे कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे परदे लगे हुए हैं।

बोर्ड पर कुछ तीर का निशान बना हुआ है।

बहुत सारे पीछे मिट्टी दिखाई दे रही है या पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बड़े टेबल दिखाई दे रही हैं।